यहां पर मुझे एक गोल्डन ज्वेलरी की शॉप दिखाई दे रही है।

सिड़ियों के साथ में ही एक पेड़ दिखाई दे रहा--

लोग इसमें बहुत से न्यूज़ --

घर के चारों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

में एस_बी_आई के बारे में जानकारी दी गई है।

जो कि एक्सरसाइज कर रहे है।

और यहां पर एक्सरसाइज करने का बहोत सा--

यहां पर बहोत से सुंदर सुंदर लेंटर हाउस --

यहां पर मुझे एक जंगल में--

नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस ग्राउंड के पीछे बहोत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस सड़क पर गाड़ियां और साइड में बसें लगी हुई है और गाड़ियां चल रही हैं।

और इसके आगे एक रोड है।

और इस तिरंगे के पीछे एक बहोत सुंदर घर दिखाई दे रहा है।

और बह हरा भरा दिख रहा है।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत से लोग चल रहे हैं।

ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सी कुर्सियां और टेबल --

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

जिसमें बहुत सितारे दिखाई दे रही है।

यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और उस सड़क पर बहुत से लोग हैं।

एक महिला फोन पर बातें करती हुई--

और इनके पीछे एक जाली लगी हुई है।

और यह घास खाती हुई दिखाई दे रही है।

जो कि काफी सुंदर दिख रहे है।

हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

इसके पीछे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

गोल्डन कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और इस मूर्ति के चारों ओर का कलर --

यहां ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक मंच दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है।

यहां पर एक गेट लगा हुआ है।

यहां पर एक मेडिटेशन क्लासरूम दिखाई दे रहा है।

और एक बड़ा सा लाइट पोल --

जिसमें बहुत सी चूड़ियां है जो कि कांच की है।

अलग अलग कलर में है बहोत अच्छी लग रही है और मेकअप किट्स है और बहोत से फेस वॉश है और साथ में--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

गाड़ियां पूरी तरह से फंस चुकी है।

बिल्डिंग्स हैंऔर उनके पीछे बहुत सारे पेड़ हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।